यह एक फल सब्जी की दुकान है।

और ऊपर छत पर पी_ओ_पी से फूल उतरे हुए हैं।

उसके और अधूरे पटरिया भी रखी हुई हैं।

यह एक कम्प्यूटर कोचिंग सेंटर है।

ये खिड़की के पास खड़ा हुआ है।

और इसमें काफ़ी सारी ई-रिक्शा के पिक्चर्स लगे हुए हैं। इसमें एक फैन लगा हुआ है।

इस पार्क मे काफी सारे हिरन चरते हुए नजर आ रहे हैं।